जो हरे रंग का पूता हुआ है जिसकी छत सफ़ेद रंग की है और सिलेटी रंग की है।

जहाँ पे बल्ब लगा हुआ है सामने एक सोफा रखा हुआ है सोफे पे एक हेयर वाश सिंक लगा हुआ हैं।

अ जिसमें से एक शोरूम है सोनिस का जो लाल रंग का हैं।

एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसके चैनल सफ़ेद रंग के है उसपे मास्क लगे हुए है जो सफ़ेद और नीले रंग के चमक रहे है।

और सड़क की जो रंग रंग है वो स्लेटी है यहाँ पर दो डॉल्फिन के स्टेचू रखे हुए है जो काले और सफ़ेद है।

बिल्डिंग में डी.एल.एस.पी.जी कॉलेज बिलासपुर लिखा हुआ है।

जिसकी जमीन का रंग जो है वो स्लेटी है और उस पे पट्टियां पड़ी हुई है।

जिस पर अ पीले रंग का एक बॉक्स बना हुआ है जिस पे ऐ. टी.एम. लिखा है और केनरा बैंक लिखा हुआ है।

फर्स्ट ने अ सिलेटी रंग का लोअर पहना हुआ है इसके हाथ में कलावा बंधा हुआ है ये पत्थर पे है पत्थर भूरे रंग का है।

सामने एक मंदिर बना हुआ है जिस में मूर्ति है जो राधा-कृष्णा जी की है।

भूरे रंग का है यहाँ पे छोटे-छोटे खम्भे रखे हुए हैं जिसपे रीबन लगे नीले रंग के--

एक टेबल है जो भूरे रंग की है प्लास्टिक की जिसपे काला कपरा रखा हुआ है--

यहाँ की फर्श जो है वो स्किन रंग की है यहाँ पे कुर्सियां रखी हुईं ह --